और बोर्ड की तरफ मुँह करके वेह कुछ लिख रहे हैं।

इसके बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर नेहा नर्सिंग होम लिखा गया है।

इस मेरेज हॉल का नाम है मधुर मिलन मेरेज हॉल ।

लोग इस मेले का आनंद लेते हुए नजर आ रहे है।

काले रंग के चमड़े के सौफे को बहुत अच्छे से सजा के रखा गया है।

दुकान पर खड़ा व दिखाई दे रहा है।

यह चित्र किसी बहुत ही पुरानी इमारत का चित्र है।

इस सड़क के बीचो बीच सफेद रंग की एक पट्टी नजर आ रही है।

जिसमें एक आदमी खड़ा होकर भाषण दे रहा है ।

यह चित्र नाचते और ख़ुशी मनाते हुए कुछ लोगो का चित्र हैं ।